इसे फोटो में मुझे ठेला दिखाइ दे--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

इस फोटो में मुझे फुग्गो की सजावटे दिखाई दे रही हैं।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

इस फोटो में मुझे मटका दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कांच का मीनार दिखाई दे रहा है।